छायादार और फलदार वृक्ष लगे हुए हैं और उसके बाहर --

वह पन्नी से पैक है और उसके पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और --

वैसे उस पर ये बास झंडे पताका लगे हुए हैं।

उसमें तीन नई नाऊ रखी हुए उसके किनारे और उस में --

इस वीडियो में एक सामने की इमारत दिख रही है। वो इमारत विवाहित घर के लिए है।

और सुन्दर-सुन्दर से आदमी है और आद कुछ पुरुष और महिलाये --

गूगल पे रखा हुआ है।

पेड़ और घास उगी हुई है। कुछ औषधि के वाली पेड़ प्राप्त है।